इस इमेज में यहां पर एक सामने दुकान दिखाई दे रही है जहां पर लाइट जलती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज मे यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ शो प्लांट्स नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक ओपन रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ टेबल और कुर्सी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर मस्जिद दिखाई दे रही है और नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ --

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर नर्सरी दिखाई दे रही है और बड़े सारे पौधे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है और कई सारे पौधे --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है और सामने देखिएगा नीचे रेलवे ट्रैक भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक पुलिस चौकी दिखाई दे रही है और बाहर एक लंबी सी सीढ़ी नजर आ रही है।

यहां पर देखिएगा इस इमेज में बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है उस पर पांच छे नाव नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कुछ लोगों दिखाई दे रहे हैं और यहां पर फोटोग्राफ फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर बड़ा सा इमारत दिखाई दे रही है और गेट के पास एक बच्चा खड़ा हुआ --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सड़क दिखाई दे रही है और एक बड़ी सी पानी की टंकी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक दीवाल और दरवाजा दिखाई दे रहा है और सामने कुछ सीढ़ी भी --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक मेन रोड दिखाई दे रही है जहां पर कुछ ऑटो रिक्शा और कार चलती हुई नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर काफी सारी यहां पर हरी मिर्च दिखाई दे रही है और एक आदमी साफ करता हुआ नजर आ रहा है।

इस में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा टायर दिखाई दे रहा है जिसे एक आदमी चलता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक टेंट दिखाई दे रहा है और नीचे बड़ा सा डी_जे का स्टेज नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कई सारे कपड़े टंगे हुए नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक ऑफिस दिखाई दे रहा हैं जहां पर कुछ लैपटॉप भी नजर आ रहें हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा हुआ है डॉक्टर सुमन आहूजा।